दो आदमी दिख रहे हैं एक लेटा हुआ आदमी है और एक चेक कर रहा है घुटनों में परी खिड़की दिख रही है जो की बंद है हरे कलर की नीचे दीवाल दिख रही है नीचे कारपेट दिख रहा है ।

साइड में लोहे की गैलरी दिख रही है ऊपर एक बड़ा सा टीन का सेट रखा हुआ है निचे साइड मिट्टी दिख रही है और साइड में एक बील्डिंग दिख रही है हल्की हल्की रोशनी आ रही हैं।

दो महिलाएं दिख रही हैं तीन जेंट्स दिख रहे हैं पीछे फूल का डेकोरेट हुआ है रेड और व्हाइट रोज़ दिख रहे हैं टेंट के परदे दिख रहे हैं पीले और ऑरेंज कलर के परदे दिख रहे हैं हल्के हल्के फूल दिख रहे हैं।

हरियाली दिख रही है एक बड़े बड़ा झाड़ है गेट दिख रहे ब्रिज के ओर आसमान दिख रहा है ।

वहाँ साइड मे वाईट कलर का बोर्ड बना हुआ हैं जिस मे पानी मेहँदी और भी चीजें रखी हुई हैं साइड मे एक डस्टबिन रखी हुई हैं महिला चेयर पर बेठी हुई हैं।

और साइड मे दो चार लोग टहल रहे हैं एक प्रतीक्षालय हैँ बैठने का।

हरियाली है एक पूल बना हुआ है खाली और सामने गेट मे दो थो घोड़े बने हैँ पंख वाले जो कि मैन दरवाजा हैँ और आसमान दिख रहा है।

अंदर साइड दो ठो बड़े बड़े गुलदस्ते रखे हैं और निचे से सीढ़ी दिख रही है अंदर जाने के लिए और साइड में दो ठो बील्डिंग दिख रहे हैं राही है और मैरून रंग की लाइट दिख रही है।

बहुत बड़ी नदी दिख रही है नदी के बीच में पथरी इलाका दिख रहा है और नदी के आउट साइड हरियाली दिख रही है।

आइट साइड दिवाल खींची हुई है एक टीन की बिल्डिंग दिख रही है निचे हलका सा स्विमिंग पूल वही गवा गुड पानी दिखेगा उसमे--

साइड मे खाली ग्राउन्ड पड़ा हुआ है राइट साइड बिल्डिंग दिखाई --